और दो बड़े--

और बहुत सारे पेड़ भी है।

यहां एक बेकरी है टॉप इन टाउन बेकरी ।

जहाँ पे बाइक साइकिल कारें खड़ी हैं।

सामने साड़ी की दुकान है।

और यहां वह दो-तीन लोग है।

एक का चेहरा भी नहीं दिख रहा है।

बड़ा सा बोर्ड रखा है वाइट कलर का--

सुनसान सा है और एक कुआ भी बना है।

यह एक पेट्रोल पंप है जहां पे एक बोर्ड लगी है।

कॉलोनी है उसके बाहर एक गेट लगा है प्रवेश निषेध--

लड़के-लड़कियां योगा कर रहें हैं।

दो-तीन फैन भी लगे हैं पीछे से धूप आ रही है।

जहां दो बाइके खड़े है।

यहाँ सामने एक कल कल का रेस्टोरेंट बना है।